यहाँ पर बहुत सारे डॉक्टर हैं नर्स हैं वार्ड बॉय है।

कलर के फूलों से डेकोरेशन किया गया हैं अलग अलग कलर की लाइट्स लगायी गयी हैं।

यह रूम हॉस्पिटल में होता है जहाँ पर पेशेंट को लेटा कर उसका चेक उप किया जाता है।

सोफे का कलर ब्लू व्हाइट रेड कलर का है।

फोटो टेबल खुर्ची बेड सफ़ेद कलर का बेडशीट --

पहले लोग अपने हाथों से धान काटते थे लेकिन अब मशीन के द्वारा।

ये एक मजदूर है जो दीवार पर पुटिंग कर रहा है।

तो चोकोस यह बच्चों की यहाँ पर बच्चों की हर खाने की चीज मिलती है।

लड़कियों के लड़कों के बच्चों के बड़ों के हर।

यह सीन बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है यहाँ पर पेड़ पानी।

यह डॉग केयर क्लिनिक है यहाँ पर डॉग को।

फोटो रखी हुई है यहाँ बहुत ही अच्छा है।